ऐसा लग रहा है कि यहां पर प्रोग्राम हो रहा है सब सजे-धजे हुए हैं कुछ हो रहा है ऐसा लग रहा है प्रोग्राम हो रहा है।

यहां बहुत कुछ सामान है सीधी है बर्तन सब बैंच सब बहुत कुछ है घर में रहे है अच्छा लग रहा हैं।